सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बहुत बड़ी है उसका कलर अ ब अच्छे दिख रहा है यहाँ पर बहुत सालों से शायद पेंट नहीं हुआ।

यहाँ पर रेड ब्लू पिंक कलर बहुत सारे कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि एक वो इस्टैंड जैसा उस पे टंगे हुए हैं यहाँ पर।

क्योंकि थोड़ी बहुत पुरानी दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसनें व्हाइट कलर की--

जिम में अभी थो दो चार पांच लोग दिखाई दे रहे है उपर साइड में लाइट लगी हुई है ।

इधर साइड में लोग वो उसकी तस्वीर बनाई गई है उपर साइड में पत्तियों से डेकोरेशन किया है।

उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और रेड कलर की शायद टोपी लगाई है।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

मशीन रखी हुई है जो की ज्यादातर पिली कलर की है और डम्बल जो की ब्लैक कलर के है।

सामने एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें इधर बहुत सारी मिठाई लगी हु रखी हुई हैं।

बोहोत सारा फूलो का डेकोरेशन किया गया है जो की गेंदे के है ऑरेंज ऑरेंज कलर --

सामने एक फंक्शन होता हुए दिखाई दे रहा है यहा पर शायद किसी की शादी है वरना कोई सा --

कप का कलर ब्लैक है कॉफी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इधर साइड में वो पेपर में कुछ करके रखा हुआ है।

यहा पर वो स्विमिंग पुल बना हुआ है यहा पर ग्रीन ग्रीन कलर की घास थोड़ी बोत उगी हुई है।

लेफ्ट साइड मे बहुत बड़े बड़े उचे उचे पेड़ लगे हुए है अ वो मौसम भी अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहा पर बाहरी सायद कोई मंदिर दिखाई देरा है यहा पे बोत सारी भीड़ ईखटा होई है।

सामने एक बहुत सारे ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लू कलर के हैं ब्लू और सिल्वर कलर का उसके पीछे का पार्ट --

यहां पर ट्रैक्टर की दुकान दिखाई है यहां पर एक आदमी जो कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है।

जिम में एक इधर साइड में कोई है पर क्या पता कोन है ज्यादा भीड़ नही है जिम में--

बाहर खड़े हुए हैं इ फंक्शन में बहोत सारे फूलों से डेकोरेशन किया है ऊपर साइड में।

यहाँ पर बहोत सारी भीड़ भी है मेला तो बहोत अच्छा दिखाई दे रहा--

यहाँ पर गेट है उसके ऊपर साईड में वो फैन लगा हुआ है यहाँ पर किसी की फोटो है तस्वीर एल्बम है वहां--

शायद यहां पर रोड दिखाई दे रहा है उसके इधर साइड में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर टेबल पर रे रेड कलर का भी छाया हुना रेड कलर कि टेबल --

बहुत सारे मटके दिखाई देरहे है जो की चोकलेटी कलर उसके उपर साइड में वो उपर जो रेता है।

टंगी हुई है यहां पर कुछ आंटी शायद अं दुर्गा जी के पेर पड़ रही हैं।

सामने का रेस्टोरेंट मने कैफे दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारी टेबल चेयर रखी हुई है यहा पर--

बहुत सारी जे_सी_बी मशीन अह रखी हुई है इधर साइड गड्ढे भी खोदे हुए हैं यहां पर बहुत छोटे बड़े--

पत्थर रखे हुए हैं भारी भारी यहां पर मशीन से कम हो रहा है यहां पर--